लोग इस गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं जिसमें लगता है मिस्त्री एक है बाकी सब देखने वाले हैं।

यह किसी चौक का फोटो है जहां पे एक नाश्ता का दुकान है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए है और नाश्ता कर रहे हैं कुछ आर्डर कर रहे खाने के लिए।